पीला दिख रहा है कुछ रेड दिख रहा है कुछ व्हाइट दिख रहा है कुछ ब्लैक भी दिख रहा है कुछ व्हाइट कलर के दिखाई दे रहे है और वहाँ पर पौधे भी कुछ हरे - भरे दिखाई दे रहे है वहाँ पर टावर भी मुझे साफ - साफ दिखाई दे रहा हैं।